जिसमे इन्होने सुन्दर आकृति उकेरी है। इस चित्र में वृक्ष --

किसी म्यूजिक संसथान का अपना बैनर भी दिखाई दे रहा है।

साथ ही साथ कुछ अत्यंत ही उपयोगी वस्तुए रखी हुई हैं।

मुख्यता इसमें ढोल बजाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में बोहोत सारे लोगो का समूह --

इसमें एक तरफ फ़ादर एवं एक तरफ खड़े हुए लोग --

यह एक वाहन स्टैंड की तस्वीर है जिसमे एक तरफ चार पहिया वाहन एवं एक तरफ दो पहिया वाहन दिखाई दे रहे हैं।

महादेव का वस्त्र धारण किया हुआ है एवं उनके आस-पास बोहोत सारी नृत्यांगनाएं नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं।

यह वाराणसी का सबसे बड़ा चर्च है जोकि नदेसर कैन्टोमेंट की तरफ़ स्थित है।